बाजार है मछली बाजार है सामने यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे मछली बेचते हुए दिखाई दे रहे है।

बहोत सारे पेड़-पौधे नज़र आ रहे है आस-पास आसमान नीला दिख रहा--

बालू-मिट्टी अ छोटे-छोटे पौधे उगे हुए नज़र आ रहे है यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है की लकड़ी का यहाँ पर--

और बीच-बीच में यहाँ हरे-हरे छोटे-छोटे घास नज़र आ रहे है।

और यहाँ पर सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसपर एस.बी.आई. ए.टी.एम. लिखा हुआ है।

अंदर यहाँ पर पार्क जैसा जगह दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं बहोत सारे यहाँ पर पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है सब ब्लैक एंड वाइट हरे-हरे दिख रहे है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है सामने देखने से ऐसा लग रहा है की यहाँ पर एक बैंक है और यहाँ पर सामने एक बोहत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।